आप देख सकते हो यहाँ पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बानी हुई हैं। इस बिल्डिंग में बहुत बड़ी बड़ी खिड़किया और दरवाजे बने हुए हैं। इस बिल्डिंग में सफ़ेद कलर किया गया हैं। इस बिल्डिंग के--

इन डेस्को के सामने चेयर भी रखी हुई हैं ये कंप्यूटर कम से कम सौ सव्वासौ लॅपटॉप यहाँ पर रखें हुए हैं यहाँ--

और ऐसे हरियाली के बीचो-बीच आप जैसा की देख सकते हैं एक कुआ दिखाया गया हैं इस कुए के- के पास में छोटी-छोटी घास भी लगी हुई हैं।